ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ है और स्लीपर पहने है वो और एक बाइक भी रखी हुई है बहुत सारे पेड़े लगे हुए है ग्रीन ।

--और येल्लो कलर का ऊपर कुछ है और बहुत दो अंकल खड़े हुए हैं।

यह एक पिक्चर है जिसपे ऑन इंडियल इंडिया लिखा है और टाटा स्काइ लिखा हुआ है और ब्लू कलर के और बोहत सारे बोर्ड लगे हुए है।

एक स्कूटी खड़ी है दो बाइक खड़ी हुई है और एक लेडीस ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो वाईट कलर का माक्स लगाए हुए हैं और बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं वहाँ पे।

यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा है जहां पर एक लेडीस माइक मे से कुछ बोल रही हैं उसने आसमानी कलर की साड़ी पहनी हुई है।

एक दीवाल है जो की वाईट कलर की है उसपे एक बोर्ड टंगा हुआ है जिस पर लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और उसके ऊपर दो तीन दो छ्त्री रखी हुई है।

इस पिक्चर मे एक ले-लेडीस है जिसने आसमानी कलर की साड़ी पहनी हुई जो माइक मे से कुछ बोल रही है दो चार सर खड़े है जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

कत्थई कलर की दो जेंट्स ने शर्ट पहनी हुई है और बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे है जेऊ प्रमाण पत्र सा रखे है कुछ--

यह एक रूम है अ उसमे पिंक कलर का पर्दा लगा हुआ है और व्हाइट कलर की दिवाले है और ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है बोर्ड सा लगा हुआ है।

इस पिक्चर मे दो तीन चार नाव है जोकी लकड़ी की है और एक नाव मे एक अंकल खड़े हुए है जिन्होंने कुछ रेड कलर का ओढ़ा हुआ है।

इस पिक्चर मे एक रेड कलर से और व्हाइट कलर से ए_टी_एम लिखा हुआ है और काच का गेट लगा हुआ है उसमे ब्लैक कलर है।

तीन बॉयज है जो की मैच खेल रहे है और एक व्हाइट कलर की रस्सी सी दिख रही है और बाजू मे एक ब्लू कलर का कार्पेट सा डला हुआ है और वो दो तीन बैट्स रखे हुए है एक बॉल डाल रहा है।

एक अंकल है ज इस पिक्चर मे जिन्होंने ग्रीन से कलर की शर्ट और पैन्ट पहने हुए है जोकी व्हाइट कलर की उसपे कुछ रखा हुआ है और ब-माइक मे से कुछ बोल रहे है और एक अंकल हैं।

इस पिक्चर मे एक अ एक घर दिख रहा है जहां पर कुछ चर्च चर्च के निशान दिख रहे है ऊपर--